इस इमेज में एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें हरा-भरा है और बीच में से सड़क है।

इसमें व्हाइट कलर का पेंट हुआ है और एक साइड में और बिल्डिंग है उसपे भी व्हाइट कलर --

टुकड़े से डरे हुए है एण्ड साइटों मे--

इस इमेज में भी यस लिखा हुआ है एक डेंजर खड़ा हुआ है पीले कलर की पट्टी लगी हुई है।

साइटों ब्लैक कलर का छप्पा हुआ है एंड सफेद कलर का गोल बना हुआ है।

एंड एक लड़के की तस्वीर ल--

इस इमेज में एक एंबुलेंस खड़ी हुई है एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें श्री राम लिखा है गैस सिलेंडर रखे हुए हैं डी.पी. रखी हुई --

एक बाई खड़ी हुई है रेड कलर की साड़ी पहने वाइट कलर का ब्लाउज पहने हुए है एक पंखा लगा हुआ है एक कुर्सी रखी हुई है।

इस इमेज एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है दो-दो या तीन मंजिला है उसमें--